अग्रवाल साड़ी की दुकान है।

दुकानों में कांच लगे हैं।

जो कि बहुत अच्छा है।

जो बहुत अच्छी--

एक घर भी बना हुआ है।

जिसके अंदर जाने के लिए रास्ता है।

ये एक सड़क है।

जिस पर एक आदमी बैठा है।

ये दो शटर हैं।

एक माइक भी लगा हुआ है।

बिजली के खंबे भी लगे हुए हैं।

पानी के अंदर एक घर है।

दुकान में सामान रखा है।

जिसका पानी नीले रंग का है।

और एक घर भी बना हुआ है।

एक लड़का मोबाइल चला रहा है।

यह एक बड़ा सा हॉल है।

आसमान में भी बादल नजर आ रहे हैं।

जो कांच के दरवाजे से बंद है।

कुछ लड़के हंहां पर खेल रहे हैं।

जिसकी दीवार लाल रंग की है।

बाहर एक बड़ा सारा कूलर रखा है।

दीवार पर लाल रंग से लिखा हुआ है।

जिसकी दीवार काले रंग की है।

जिसके ऊपर कुछ चिड़िया ये बैठी हैं।